कुछ मूर्तिया एवंम रोबर्ट पॉट जल्लर आदि बहुत ही चीजे रखी हुई दिक्चित आहे. यहे पे कुछ लोग भी खड़े हुए दिक्चित आहे.

एवम बोहत से लोग दिक्षित आहे एक हरे रंग की मशीन राखी हुई दिक्षित --

मला हे फोटो एक स्टेचू कि दिक्चीत आहे दोनो स्टेचू गले मे फूलो की माला पहने हुये दिक्चीत आहे यह स्टेचू गोलाई मे बना हुआ दिक्चीत आहे इस के आ--

मला ये फोटो एक शोरूम का दिखचित आहे यहाँ पर कूलर पंखे लाइटे प्फ्रिज अधि बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीज दिखचित आहे.

दुकान में सब समान व्यवस्थित जमावा दिक्षित आहे.

रोड के उस पार कुछ लोग कड़े हुए दिक्चित आहे साइकल ऑटो एवंम बाइक रखी हुई दिक्चित आहे आस-पास पेड़-पौधे एवंम बिजली का तार दिक्श्चीत आ --

मला ये फोटो एक प्ले ग्राउड का दिक्सत हे यह एक हिप्पोपॉटेमस की फोटो --